यहां एक छोटा सा तालाब दिखाया जो नदी दिखा हुआ है टाइप की है तीन कुत्ते अच्छी भेटिन खड़े हुए है रोड पर एक आदमी शर्ट पहने हुए काला पेंट पहने हुए पैदल चल रहा है।

एक साम्मे बड़ा तालाब नजर आ रहा है उसके ऊपर से एक ब्रिज बनाया गया है नीचे टूरिस्ट की मौजू की नी भरी गयी है।

उस पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे कुछ लाल कपड़े कुछ काले कुछ गुलाबी पहने हुए यहा से दे आते से आईने सिटी में पहोच जाते है।

यहाँ एक शासकीय कन्या पाली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक जीप भी रखी हुई है दो गाड़ियाँ भी रखी हुई है वहाँ जाने के लिए रास्ता बना हुआ है।

यहाँ एक भेतिन मकान बना हुआ है जिसकी बाउंड्री स्टीन बॉडी में दिखाई दे रही है।

यहाँ सुपरहिट मंच बनाया गया है मंच के पीछे कोई मंदिर सा लग रहा है।

अब मंच पर दो आदमी एक लड़की खड़ी हुई है जो काले कपड़े पहने हुए है एक आदमी अपना मोबाइल से कुछ कर रहा है एक लड़की बैठी है उसके सामने कुर्सियां भी डली हुई है।